और यहां बहोत सारे पेड़ और झाड़ियां भी दिखाई दे रही है आसमान दिख रहा है।

और यहां जमीन भी दिख रही है जमीन में बहुत सारा समान बिखरा पड़ा है।

आसमान दिख रहा है और जमीन भी दिखाई दे रही है और यहां पे छोटा सा गत्ते का डिब्बा दिखाई दे रहा है।

दीवार पे शू बोर्ड दिखाई दे रहा है।

और यहां पे लोग भी दिख रहे हैं।

और यहां पे एक टूटी हुई गाड़ी दिखाई दे रही है।

और यहां पे पेड़ झाड़ियां दिखाई दे रहीं हैं।

यहां पे बहोत सारा डेकोरेटिव सामान रखा हुआ हैं और बाहर से बहोत बड़ा शीशा लगा हुआ हैं।

वहां पे बहोत सारे शर्ट्स दिख रहे--